यहाँ पर एक फिश मार्किट दिख रहा हैं यहाँ पर कई सारी मछलिया भी दिख रही हैं।

यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है पीछे कुछ बड़े बड़े घर भी बने हुए है यहाँ पे पुरुष झाड़ू भी लगा रहा है।

ऊपर कुछ लाइटे भी लगी हुई हैं और पंखे भी लगे हुए हैं निचे दो पुरुष भी बैठे हुये है एक पुरुष चश्मा लगाया हैं।

यहाँ पर हमें एक रोड दिख रही हैं रोड पर बनी हुई काफी बड़ी चित्रकला भी दिख रही हैं जिसपर लिखा हुआ हैं स्वच्छ सर्वेक्षण--

इसपर कही सारी महिलाये और पुरुष भी बैठे हुए हैं कुछ पुरुष खड़े भी हुए हैं यहाँ पे कुछ भजन भी हो रहे हैं यहाँ पे कुछ झंडे भी लगे हुए हैं।